यहां पे दो लोग ऊपर की सीलिंग को अ-तोड़ने का काम कर रहे हैं छत कि सीलिंग को तोड़ने का काम कर रहे है।

यहाँ मह-म मस्जिद के बहार ताजिया रखा हुआ है यहाँ लोग सदा रहे है और फोटो भी खींच रहे है यहाँ पे एक आदमी ताजिया को सजाते हुए दिख रहा है।

यहाँ एक फ़ूड ट्रक है जहा पर खाने की पिने की चीज़े मिलती हैं कोका कोला भी का ऐड यहाँ पर लगा हुआ है भोत सारे लोग यहाँ से खा पी के वापस निकल भी रहे हैं यहाँ पे भोत सारे लोग हैं।

यहाँ पे सभी बच्चे किसी चीज की तैयारी कर रहें हैं ग्रुप लोग ग्रुप वाइस सभी कुछ ना कुछ अपना-अपना बना ही रहें हैं और मैम इन्हें देखकर गाइड ही कर रही हैं कि केेसा बना है कैसा नहीं सब बता रही हैं।